टीम में तीन जने दिखाई दे रही है।

जेन-स-बी दिखाई दे रही है और कार भी खड़े हुए हैं और धर बगल में पतानी कौन सी गाड़ी है व्हाइट कलर की--

डोंगर जैसे है जिसमें बहोत लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पे बहोत बड़ा पहाड़ी इलाका है और उसमें पेड़-पौधे भी लगे हुए हैं।

और यहाँ पे डस्टर भी रखा हुआ है और मार्कर भी रखा हुआ है।

ये किसी क्लास रुम जैसी लग रहीं हैं और इसमें विद्यार्थी लोग अपना पढ़ाई कर रहें हैं।

और इस लोग के साथ में एक सर भी है जो ब्लैक कलर के शर्ट पहने हुए हैं।

और ये दीवार बहोत पुराना दिख रही है।

जलने वाली के एरिया की जगह में गिट्टी भी रखी हुई हैं।

रेस की पेंटिंग है जो रेड कलर की थी।

और आटो भी और यहां पर तीन जेन्स भी दिखाई दे रहे हैं।

बहोत अच्छी दिखाई दे रहे हैं यहां पे बहोत सारी लाइटें भी--

और यहां पे बहोत सारी गाड़ी भी रखी हुई है और एक जे_सी_बी खड़े हुए हैं।